पीछे फूलों की सजावट बहुत सुन्दर है फूलों को बहुत करीने से सजाया हुआ है।

दिखाए गये चित्र मे ऐसा प्रतीत होता हैं जैसे कोई संगोष्ठी चल रही हैं।

परछाई भी दिख रही है | पीछे लगता है कुछ एक जैसी है और यह गाड़ी बहुत खूबसूरत है ।

दिख रहा है जो लगता है अब सूख गया है यह किसी गाँव का द्रश्य है |

पार्क में होला होप जैसे रिंग दिख रहे हैं जोकी भिन्न-भिन्न कलर के हैं।

सफेद रंग की शर्ट पहनी है | सामने वाला इंसान काले रंग की शर्ट मे दिख रहा है ।

पीछे की तरफ जो वनस्पति हैं जो काले कलर की हो चुकी हैं।

झाड़ियाँ भी दिख रही है लगता है यह रात का द्रश्य है |